ओनलाइन ट्रेन बुकिंग के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि आईआरसीटीसी पर एक टिकट कैसे चुनें
यात्रा के लिए सेक्टर का चयन करना
ट्रेन और यात्रा की श्रेणी का चयन करना
यूज़र की जानकारी प्रविष्ट करना और E टिकट या I टिकट का निर्णय करना
मैं यह भी दर्शाऊंगी कि पहली बार डेबिट कार्ड कैसे उपयोग करें और इसे ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए कैसे उपयोग करें
टिकट खरीदते समय भुगतान के लिए निम्न में से किसी एक की ज़रुरत होती है बैंक का खाता जिसके साथ एटीएम कार्ड हो
ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की क्षमता के साथ बैंक खाता क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर मैं निम्न में से कोई एक तरीका चुनूँगी मेरे पास एक आईसीआईसीआई एटीएम कार्ड है यह वीसा डेबिट कार्ड भी है
अतः अब एक टिकट खरीदते हैं
यूज़रनेम में मैं कन्नन अंडरस्कोर मोउ टाइप करुँगी पासवर्ड मैं यहाँ लॉगिन करती हूँ
माना मैं मुंबई से जाना चाहती हूँ
अतः जैसे ही मैं चार कैरेक्टर टाइप करती हूँ यह सुझाता है अतः मैं मुंबई सेंट्रल चुनती हूँ
सुरा मैं चार कैरेक्टर टाइप करती हूँ और इंतज़ार करती हूँ
अतः वास्तव में मैं सूरत जाना चाहती हूँ
ध्यान दें बॉम्बे सेंट्रल के लिए स्टेशन कोड बीसीटी और सूरत के लिए एसटी है
भविष्य में मैं सीधे बीसीटी और एसटी टाइप कर सकती हूँ
उदाहरणतः इसको मिटायें और बीसीटी टाइप करें
इसे ऐसा ही छोड़ दें
डेट में मैं 23 दिसंबर चुनती हूँ मैं शेष चुनती हूँ जो कि E टिकट और जनरल हैं
मैं E टिकट और I टिकट के बारे में बात करुँगी और वो विकल्प क्या हैं उनमें क्या अंतर हैं मैं बाद में समझाऊंगी अब मैं ट्रेनें ढूँढ़ती हूँ मैं दायीं तरफ खिसकाती हूँ और देखती हूँ
मुझे बहुत सी ट्रेनें प्राप्त हुई हैं
अब मैं फॉण्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा करती हूँ
जिससे कि हम इन सबको आसानी से देख सकें माना कि मैं ट्रैन नंबर 12935 से जाना चाहती हूँ
अतः अब मैं सेकंड सिटिंग 2 एस में टिकट की उपलब्धता देखती हूँ
मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ यह तुरन्त बताता है कि यह वेट लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची में है
यद्यपि यह प्रतीक्ष सूची में है फिर भी मैं इसे बुक कराना चाहती हूँ
अतः मैं इस पर क्लिक करती हूँ मुझे एक मैसेज मिलता है जो स्टेशन मैंने चुना है वो इस मार्ग पर नहीं है
माना कि मैं बान्द्रा टर्मिनस चुनना चाहती हूँ
अब उस पर जाती हूँ और बुक करती हूँ
अब नाम में कन्नन मौद्गल्य टाइप करती हूँ एज में 53 मेल बर्थ प्रेफरेंस में विंडो सीट चुनती हूँ
यहाँ सीनियर सिटिज़न यानि वरिष्ठ नागरिक के लिए बटन है और मुझे एक मैसेज मिलता है कि यात्री की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ओक पर क्लिक करती हूँ
और यदि मैं महिला वरिष्ठ नागरिक हूँ तो ये कहता है यात्री की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
अतः वरिष्ठ नागरिक माने जाने के लिए महिला के लिए आयु 58 और पुरुष के लिए आयु 60 वर्ष है
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ छूट है
अतः मैं वापस मेल विंडो सीट पर जाती हूँ
मुझे इन सब पर ध्यान नहीं देना है
मुझे यह इमेज प्रविष्ट करनी है e37745आ अब गो पर क्लिक करती हूँ
यह विवरण देता है और बताता है कुल रकम 99 है
अब मुझे भुगतान करना है
मेक पेमेंट पर कलक करती हूँ
मेरे पास इनमे से कुछ भी हो सकता है मैं एक क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग सुविधा डेबिट कार्ड कैश कार्ड और कुछ भी उपयोग कर सकती हूँ
ज़्यादातर लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए मैं डेबिट कार्ड का उपयोग प्रदर्शित कर रही हूँ
मुझे इनमे से कोई एक चुनना है दुर्भाग्य से मेरे पास जो आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है
लेकिन यह कहता है अन्य कार्ड जो यहाँ सूचीबद्ध नहीं हैं अगर यह मास्टर या वीसा डेबिट कार्ड हों यहाँ क्लिक करें
अतः मैं यहाँ क्लिक करती हूँ और मुझे मैसेज मिलता है कि निम्नलिखित बैंकों के वीसामास्टर कार्डों को उस तारीख पर ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग कर सकते हैं
अतः आईसीआईसीआई बैंक सूची में है
अब मैं इसे बंद करती हूँ
मैं इनमें से एक चुनती हूँ
मैं वीसा कार्ड चुनुँगी अतः कार्ड का प्रकार वीसा है
मेरे पास जो एटीएम कार्ड हैं मैं उसका नंबर नहीं दिखाऊंगी
आपको 16 डिजिट का नंबर प्रविष्ट करना है जो आपके डेबिट कार्ड पर है और फिर क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी यानि समाप्ति डेट और फिर सीवीवी नंबर जो 3 डिजिट का नंबर है आपके कार्ड के पीछे आखिरी तीन डिजिट्स आपके हस्ताक्षर के आगे
इस जानकारी को प्रविष्ट करने के बाद मुझे बाय बटन दबाना है
मैं अभी यह करती हूँ
मुझे आईसीआईसीआई बैंक से यह मैसेज मिलता है
मुझे वैलिडिटी डेट डेट ऑफ़ बर्थ और एटीएम का पिन नंबर प्रविष्ट करना है
इस कार्ड को ऑनलाइन भुगतान में रजिस्टर करने के लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ जिससे आप देख सकें कि यह क्या है मैं इन सब को प्रविष्ट करुँगी लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊँगी
जैसे ही मैं यह करती हूँ मुझे यहाँ दिया हुआ एक मैसेज मिलता है
अब मैं एक 6 डिजिट का नंबर प्रविष्ट कर रही हूँ मुझे यह ठीक से चुनना है यह आसान होना चाहिए जिससे मुझे याद रहे और दूसरों के लिए इतना आसान भी नहीं होना चाहिए
मुझे यह दो बार टाइप करना है
यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने पासवर्ड ठीक से बनाया है
यह टाइप करने में हुई गलतियों को रोकेगा
याद रखें यह पासवर्ड आपको सिर्फ एक बार ही बनाना है
अब से आप इसको सुनिश्चित करने के लिए अपने डेबिट कार्ड के साथ इस पासवर्ड का उपयोग करेंगे अब सबमिट पर क्लिक करती हूँ
मुझे मैसेज मिलता है बधाई हो
टिकट बुक हो गया है
ध्यान दें पन्र नंबर के साथ टिकट के बारे में सारी जानकारी भी दी गयी है
जो हमें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले निरंतर जांचना होगा कि क्या हमारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट कन्फर्म यानि निश्चित हुआ है या नहीं
यहाँ हम आईआरसीटीसी द्वारा भेजा गया स्वचालित ईमेल देख रहे हैं
यहाँ टिकट का विवरण है
अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं
अब स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
मैं अपनी स्लाइड्स वापस आ गयी हूँ
आगे क्या करना है160
आप इस टिकट का प्रिंट ले सकते हैं
आपकी यात्रा से पहले प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट कन्फर्म होना चाहिए
प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट का प्रिंट लेना पर्याप्त है
अब आपको दोबारा प्रिंट नहीं लेना है
यदि टिकट पहले ही कन्फर्म हो गया है तो कोई समस्या नहीं है
इस ट्यूटोरियल में मैंने दिखाया कि प्रक्रिया कितनी साधारण है
अलग अलग एटीएम कार्डों के लिए कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं
क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंक ट्रांज़ैक्शन के लिए तरीका सामान है
लेकिन कुल मिलाकर प्रक्रिया सभी तरीकों में समान होती है
कार्ड या अकाउंट की जानकारी प्रविष्ट करना
पासवर्ड प्रविष्ट करना कुछ में मोबाइल फोन पर भेजे गए अस्थायी कोड की ज़रुरत होती है
अगला प्रश्न यह है कि व्यक्ति को E टिकट खरीदना चाहिए या I टिकट
पहले हम E टिकट के साथ शुरू करते हैं कोई व्यक्ति यह बिलकुल आखिरी समय में भी खरीद सकता है
बस प्रिंटर की या स्मार्ट फ़ोन की ज़रुरत है और इसे खोने का भी कोई डर नहीं है
इसे खोने पर आप दोबारा प्रिंट भी ले सकते हैं
यात्रा के समय आपको आइडेंटिटी प्रूफ यानि पहचान प्रमाण की ज़रुरत होती है
इसके विपरीत I टिकट की स्थिति में यह आपको कोरियर से भेजा जायेगा जिसके लिए आपको लगभग 50 रूपए देने पड़ेंगे
डाक वितरण के लिए आपके पास 2 3 दिन होने चाहिए
डाक वितरण सभी शहरों और गाँवों में उपलब्ध नहीं है
कैंसिलेशन सिर्फ टिकट काउंटर पर ही हो सकता है
अगर आप एक I टिकट के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहचान प्रमाण की कोई ज़रुरत नहीं है
आइडेंटिटी प्रूफ यानि पहचान प्रमाण क्या होता है160
सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो के साथ पन कार्ड चुनाव कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यह इनमे से कुछ भी हो सकता है
अब मैंने एक वेबसाइट खोली है जो बताती है कि अपने फोटो के साथ इनमे से किसी एक को रखा जाना है
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं
यहाँ रियायती दाम उपलब्ध हैं
यहाँ एक उपयोगी साइट दी गयी है
अब इस साइट पर जाते हैं
मैं स्लाइड्स पर वापस आ गयी हूँ
वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 40 की छूट मिलती है
वरिष्ठ नागरिक कौन होता है160एक पुरुष जो 60 साल या उससे अधिक हो और एक महिला जो 58 साल या उससे अधिक हो
किसी भी छूट के लिए व्यक्ति को यात्रा के समय प्रमाण की ज़रुरत होती है
यात्रा के समय क्या क्या साथ रखना चाहिए अगर आपने एक E टिकट बुक किया है तो अपने टिकट का कोई एक प्रमाण स्मार्ट फ़ोन में E कॉपी या टिकट का प्रिंट और एक पहचान प्रमाण या I टिकट रखें
जैसा कि पहले बताया गया है i टिकट की स्थिति में पहचान प्रमाण की ज़रुरत नहीं होती है
मेरे पास आपके लिए कुछ उपयोगी टिप्स हैं कृपया टिकट पहले से बुक करें
अगर यात्रा की सम्भावना कम हो फिर भी बुक करा लें
आप टिकट कैंसिल भी करा सकते हैं अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कुछ रूपए का नुकसान होगा
टिकट न होने से तो यह बेहतर है
आखिरी समय पर आप टिकट नहीं खरीद सकते
बुक करें जब आईआरसीटीसी वेबसाइट तेज़ चले
आमतौर पर मध्य दोपहर या देर रात में तेज़ हो सकती है
अगर संभव हो तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक टिकट बुक न करें
अगले ट्यूटोरियल में हम चर्चा करेंगे कि आईआरसीटीसी से बुक किये टिकिटों का प्रबंधन कैसे करें
पिछली बुकिंग को कैसे देखें पन्र की स्थिति को कैसे जाँचें और टिकट कैंसिल कैसे करें
अब मैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट पर कुछ कहूँगी
httpspoken tutorialorg What is a Spoken Tutoria पर उपलब्ध विडिओ देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद